इस तरफ में बहुत सारे लोग आना जाना कर रहे हैं साइकिल और बाइसाइकिल भी मुझे यहां दिखाई दे रही है।

यह मुझे एक बड़ा सा महल दिखाई दे रहा है।

और पेंडेंट के अंदर में चेयर रखे हुए दिख रहे हैं।

यहां मुझे एक ब्लू कलर का बकेट भी दिखाई दे रही है।

यहां मुझे एक तखता के टुकड़े दिखाई दे रही है सूखा बंबू दिखाई दे रही है।

मुझे यहां बहोत सारे आदमी खड़े होते हुए भी नजर आ रही है।

यहां पर मुझे मोबाइल का दुकान दिखाई दे रहा है ऊपर मुझे अप और सैमसंग लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

नीचे मुझे बहुत सारे आदमी लोग खड़े होते हुए दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे बैग भी दिखाई दे रही है।

ऊपर वॉल में मुझे काले रंग का कुछ पिक्चर लगा हुआ भी दिख रहा है।

तस्वीर में मुझे पहाड़ दिखाई दे रहा है।

और मुझे यहां बहोत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रही है।

यहां मुझे नीचे में ग्रीन कलर का कारपेट दिख रहा है।

यहां पर मुझे शादी का मंडप दिखाई दे रहा है मंडप में मुझे दूल्हा और दुल्हन दिखाई दे रही है।

यहां मुझे दो खाली लाल कलर के चेयर भी दिखाई दे रही है।

पीछे मुझे बहुत सारे पेर पौधे दिखाई दे रही है और यहां मुझे पहाड़ भी दिख रहे हैं।

यहां मुझे दो बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पोस और उसके वायर्स भी दिखाई दे रही है।

बाहर में मुझे एक सोलर प्लेट दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक पोस और वायर भी दिखायी दे रही है।

माल के सामने में बहोत सारी इटे रखे हुए भी नजर आ रही है।

एक काले गोरिल्ला का पुतला भी दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे ऑरेंज कलर का छोटा सा घर दिख रहा है।

ऊपर मुझे सूरज का ड्राइंग दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे मेरी गोल्ड के फूल के माला भी दिखाई दे रही है।

दरवाजे में मुझे पिंक कलर और ब्लू कलर का पर्दा दिखाई दे रही है।

दुकान के अंदर में बहुत सारा बुक रखा हुआ है।

और कुछ काले रंग का कुछ मशीन दिखाई दे रहा है।

नीचे मुझे खाली कुर्सी दिखाई दे रही है और एक बड़ा सा ब्राउन कलर का टेबल दिख रहा है।